एक कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का दृश्य जहां पे एक एक लड़की लड़की लहंगा पहन कर के एक डांस के मुद्रा में है जो कि जो कि उजले कलर का सूट और लाल कलर का लहंगा पहने हुए है।

ये छोटे-छोटे कुछ पूजा करने के लिए कुछ पिरामिड रखे हुए है एक पेड़ भी है जिसपे लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ हैं।

बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के संस्पाथक भगवान बुद्ध के तस्वीर के आगे माल्यार्पण करते कुछ लोग साथ में धम्म सम्मलेन धम्म सम्मलेन में आये कुछ आगन्तुक जो की ध्यान से धाम संस्पाथक की बातो को सुन रहे हैं ये किसी प्रतिमा के अनावरण का दृश्य है।

पहले भूत पूर्व मुखिया रह चुके है जिनका नाम स्वर्गीय शुभम प्रसाद मुखिया है। जिनका जन्म पच्चीस- तेईस दिसम्बर उन्नीस सौ पचासी- पंचयनबे- पचासी को हुआ था। जिनकी मृत्यु तेरह फरवरी उन्नीस सौ पंचानवे को को हुआ है। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है

यह जिसका अनावरण आजकल में ही किया गया है।

ढोल-तासे के साथ चल रहे हैं कुछ बच्चे इस झांकी को बहुत ध्यान से देख रहे है कुछ पुलिस वाले भी हैं।